बहुत सारी कोताल कथारी रखे गए हैं उसके बगल में पेड़ है।

यह एक चित्र है जिसमें भवन दिखाया जा रहा है और इसके भवन के बाहर आंगन है।

जहा पर पटरी के इस पार से उस पार होने के लिए एक ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है।

यह एक व्यक्ति का फोटो है जोकि जिम में है इसके जस्ट पीछे एक दीवाल है जोकि पीले कलर का रंग हुआ है।

गर्दन में एक रेड कलर का धागा है जिसमे कुछ ताबीज है।

और वह पेट्रोल धरती के नीचे बना टैंकर में जा रहा है पाइप के द्वारा और गाड़ी के जस्ट पीछे एक व्यक्ति बैठे हैं।

और बुक है जो कि रेक ब रैक बाई रैक न रखा हुआ है।

जिसके बगल में एक व्यक्ति नीले कलर का कपड़ा पहने हैं।

और लाइट लगा हुआ है खंभे में जो कि हाइट में है।

इसके बगल में एक घर छोटा छोटा बना हुआ है और पेड़ बहुत सारे लगे हैं।

कुछ व्यक्ति नाव पर खड़े हैं और कुछ व्यक्ति स्नान कर रहे है।

इस समुद्र के किनारे एक नाव है।

यह एक दुकान का चित्र है।

एक लेडीज बूढ़ी है जोकि वह साइड में खड़ी है। कुछ व्यक्ति जा रहे हैं ।

दो व्यक्ति सेल्फी ले रहे हैं एक व्यक्ति जिम में डंबल उठाए हैं।